कुछ ऑटो खड़ा दिखाई दे रहा है। आदमी बाइक से जाते हुये दिखाई दे रहे हैं और एक पेड़ भी है।

दो लड़का हैं। एक ने काला टीशर्ट पेहन रखा है। एक ने लाल और सफेद टीशर्ट पेहन रखा है।